टूल रखा हुआ है। डिकॉर्ड्स रखे हुए है।

ये एक गार्डन है। इस गार्डन के पास में यहाँ पर एक बिल्डिंग है। इसमें एक मूर्ति बैठी हुई है।

जीपे रखी हुई है यहाँ पर। एक जीप सफ़ेद रंग की है। एक नीले रंग की है। एक ऑरेंज रंग की है। एक ब्लैक रंग की है। एक पुरानी सी खडी हुई है।

एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है यहाँ पर एक सा वाइट बोर्ड लगा हुआ है एक लाल चेयर रखी हुई है।

यहाँ पर बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए है। इनमे से कुछ गुब्बारे सफ़ेद रंग के है। कुछ हरे रंग के कुछ ऑरेंज रंग के है।

यहाँ पर कोई फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में बहोत सारे बड़े बड़े बक्से रखे हुए बहोत सारा--

ये कोई ऑफिस है इस ऑफिस में अलग-अलग कैबिने बने हुए है यहाँ पर बहोत सारी पंखे लगे हुए--